सीढ़ियों के बाहर एक हरे रंग का मैट दिख रहा है।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा स्कूल का मैदान नज़र आ रहा है।

कुछ ईंटे भी पड़ी हुई है।

और कुछ सेव दिखाई दे रहे हैं।

एक तरफ व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

सामने टेबल्स और नीले रंग के सोफे लगे हुए दिख रहे हैं।

जिसमें तीन महिलाएं और दो पुरुष दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक बेकरी नजर आ रही है।

जिसमें बच्चों के खेलने के लिए बड़े बड़े झूले लगाए गए हैं।

और एक बड़ी सी दीवार दिख रही है।

इस चित्र में एक बेडरूम नजर आ रहा है।

और बहुत सारी चेयरस लोगों के बैठने के लिए लगाई गई है।

दो पेंटिंग्स और सामने दो सफेद रंग के दरवाजे नजर आ रहे हैं।